यह एक छत है। छत का रंग सफ़ेद है। उस पर दो व्यक्ति खड़े हैं। जो सफाई कर रहे हैं।

सामने उसमे एक बतख है। बतख का रंग पीला काला सफेदा है।

मैदान का रंग हरा लाल सफेद है।